मकान के ऊपर में जाली मारा गया है।

बहुत सा कपड़ा नजर आ रहा है।

इस स्टेशन पर एक आदमी है ओ--

हाल है जिसमें कुर्सी लगा हुआ है।

नल तीन गुना लगाया हुआ है।

बूताने वाला एक ठे भी मशीन --

अभी बड़ा से वाला बंद है।

नीचे में मड़ई के अंदर में टेबल रखा हुआ है।

इलाज कर रही है एक गो बेड खाली है।

आदमी भी है सामने में दरवाजा के पास।

एक बोर्ड लगा हुआ है मूर्ति बनाया गया है अअ बहुत सा मतलब सयाना मूर्ति छोटा मूर्ति बड़ा मूर्ति है एक लोगो नहीं चार गो आदमी है।

ऊपर में चघा हुआ है वह चघते जा रहा है।

इसके बाद एक बोर्ड है ग्रिल लौक रहा है।

और एक आदमी दोनों टेबुल के बीचों बीच--

एक झाड़ू लगा रहा है।

व्याह का पंडाल बनाया गया है जिसमें काउंटर लगाया गया है।

पहाड़ बहुत सा लंबा है जिसमें एक ल आदमी के लिए है।

नकली दिख रहा है इधर में दो पहाड़ों के बोल्डर है।